बहुत सारे पथरे भी दिखाई दे रहे हैं।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

एक स्विमिंग पुल भी दिखाई दे रहा है।

नीचे एक चेयर भी दिखाई दे रहा है।

मुझे आसमान भी दिखाई दे रहे हैं।

फोटो में मुझे एक बिल्डिंग दिखाई दे रहा है जिसका रंग येलो रंग में है।

नींबू कटा हुआ रखा हुआ है।

मुझे शीशा का ग्लास भी दिखाई दे रहा है।

पीछे एक बैग भी दिखाई दे रहा है।

ये कपड़े सब भी सुखाए हुए दिखाई दे रहा है।

मुझे आसमान भी दिखाई दे रहा है।

बहुत सारी गाड़ियां भी दिखाई दे रहे हैं।

मुझे चेयर दिखाई दे रहा है।

मुझे इस फोटो में एक दुकान दिखाई दे रहे हैं।

नीचे बहुत सारे कार्टूने दिखाई दे रहे हैं।

मुझे एक बड़ा सा कार्टून भी दिखाई दे रहा है।

मुझे कपबोर्ड भी दिखाई दे रहा है।

मुझे किसीम किसीम तरह के प्रोडक्ट्स दिखाई दे रहे हैं।

मुझे स्ट्रीट लाइट भी दिखाई दे रहे हैं।